में बहोत सारा सामान टंगा के रखा हुआ है।

पीछे में बहुत बड़ा पेड़ उगा हुआ है।

यहां बहुत सारा लाइट लोग ऑन रखा हुआ है।

इस दुकान के अंदर में बहोत सारा चेअर लोग भी रखा हुआ है।

एका सामने में एक पियानो रखा है।

इस फ्लावर गार्डन में पत्थर से लाइन से बाउंड्री बनाया गया है।

इस रुम अंदर का वाल पूरा वाइट से पेंटिग किया गया है।

यहां एक लड़का चाय पकड़ के है।

घर का बाहर में एक लड़की नजर आ रहा है।

घर के सामने में बहुत सारा फ्लावर पॉट्स लोग लगा के रखा हुआ है।

गेट का अंदर में बहुत बड़ा बड़ा पेड़ नजर आ रहा है।

यहां मुझे दुकान नजर आ रहा--

दुकान के बाहर भी बहुत सारा पाइप लोग रखा हुआ है।

यहां एक बड़ा बिल्डिंग का अंदर दिखाया गया है।

इस बिल्डिंग में बहुत सारा खिड़कियां हैं।

में जीसस का क्रॉस लगाया हुआ है।

बैक में बहोत सारा पे लोग दिखाई दे रहा है।

ये एक घर का सामने में बनाना दिखाई दे रहा है।

यहां तीन गाड़ी और एक बाइक भी दिखाई दे रहा है।

नदी का किनारा में मुझे बहुत सारा जंगल दिखाई दे रहा--